ओर यहा चारों तरफ़ एक बाउंड्री बनी हुई है जो व्हाइट और रेड कलर की हेगी और ये गेट रेड कलर का हेगा और यहाँ पे एक खंबा लगा हुआ है जिसपे लाल कपड़ा बंधा हुआ हेगा।